यह क्षेत्र बोहोत बोहोत दूर होते हैं।

यह एक आटा गूदने की मशीन है।

हमारे लिये मंदिर काफी मान्यता प्राप्त होता है। मंदिर काफी अच्छी जगह होती है जहाँ मन संतुष्टी और और उम्म आराम मिलता है।